केरा है सब डलिया में चमकी-उमकी लगाईल हईई।

फूल से सजायल-उजयाल एगो आदमी हय आदमी उजर टी-शर्ट पेहनले हय करिया में के जीन्स पेहनले हय।

मैदान हई मैदान में कोई सुतल हई।

इ एजा तीन गो लड़की हई साड़ी पेहनले चारो साड़ी पेहनले।

टी-शर्ट पेहनले हईई हाथ में किताब लेले हईई।